इस फोटो मैं मुझे पेड़ दिखाई दे रहे--

इस फोटो मे मुझे हॉल दिखाई दे रहा है इस फोटो मे मुझे बहोत सारी--

इस फोटो मे मुझे ट्रक दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी कुर्सी टेबिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई--

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे लोहे के पाईप दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे लोहे के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है।